यहां एक खंभा दिखाई दे रहा है।

यहां पर कबाड़ी वाला एक रिक्शा दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर साइकल की दुकान का है।

दीवार का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी हेलमेट पहना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में ओवर ब्रिज दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में कुछ पिलर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पर एक पानी टंकी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है ।

यह तस्वीर दिन के समय का है।

यहां पर एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारी कृत्रिम बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी पार्क का है।

यहां पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहां दो ट्यूब लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

फ्लाइट पर तिरंगा झंडा का निशान दिखाई दे रहा है।

दीवार का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी पार्क की है ।